और उस दुकान में गुब्बारो से सजाये हुए है।

इस वीडियो में एक कक्ष में गुब्बारे लगे हुए हैं और यह कमरा कक्ष बहुत सुन्दर --

उसकी सहायता कर रहा है और उसको मूविंग करते हुए --

और सेल्फी खींचने का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं।

मुख्य दरवाज़े पर एक व्यक्ति तौलिया डाले खड़ा हुआ है और एक में --

और खुश-खुश में बच्चे भी ब-बजा रहे है और बढ़ा आनंद ले रहे है।

पलस्तर का कार करता हुआ कारीगर दिख रहा है।

छोटे-बड़े बच्चे सभी जाते है झूलते है और आनंद होते है।

इस वीडियो में सामने एक रेलवे ट्रैन की पटरी दिख रही है और उसपे एक ट्रैन आती हुई दिख रही है।